ये एक दुकान दिख रही है जिसमे अलग-अलग तरह का सामान रखा हुआ है कुछ सामान ऊपर टंगा हुआ है इधर कुछ बनिया वगेरा दिख रही है और इधर भी एक सामान साइड में रखे हुए है।

ये पौधे लगे हुवे है और एक आदमी है जो बेगनी कलर के लाइनिंग वाली व्हाइट लाइनिंग शर्ट पेहना हुवा है ग्रीन मग से पानी डाल रहा है।

एक आगे एक पुतला खड़ा है लड़के का जिसने रेड टी-शर्ट और रेड टी-शर्ट के ऊपर ब्लैक कुछ लिखा हुवा है नीचे ब्लू जिन्स पेहना है साइड मे भी कुछ कपड़े टंगे है।

यह वेटिंग रूम जैसा दिख रहा है जिसमे चार पांच लोहे की ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई हैं।

किसी ने व्हाइट येलो और अलग-अलग कपड़े पहने है।

यह एक कपड़ो की शॉप दिख रही है जिसमें आगे की तरफ दो पुतले को एक कुर्ता रेड कलर और ब्लैक कलर का पहना हुआ है और पिंक कलर का कोट पहना रखा है और इधर साइड में तीन कुर्ते ओर टंगे हुए दिख रहे है।

ये एक ऑफिस दिख रहा है ओफिस में एक टेबल रखी हुई है टेबल पर लैपटॉप है और ड्रॉवर है और बहुत सारी फाइले रखी हुई हैं।

यह एक हॉल दिख रहा है जिसमे खिड़की लगी हुई है कांच वाली और एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिख रहा है।

ये कांच के बाउल में आइसक्रीम रखी हुई हैं प्लेट में जिसमे तीन फ्लेवर में आइसक्रीम हैं येलो पिंक और क्रीम कलर में साइड में चम्मच रखे हुए हैं।

एक अलमारी दिख रही है जिसमें की बहुत सारे तरबूज़ रखे हैं और इधर कच्चे केले दिख रहे हैं फूल गोभी दिख रही है और पाइनएप्पल दिख रहा है।

यह एक पिंजरा दिख रहा है लोहे का जिसमे एक बहुत बड़ा शेर दिख रहा है और उसकी आँखे दिख रही है कान वगेरा दिख रहा है उसके मुँह दिख रहा है। और उसके दो पैर दिख रहे हैं।

यह एक पाइप है पाइप के ऊपर दो भाइट तोते दिख रहे है और तीन अलग कलर के थोड़े सेडेड टाइप दिख रहे है।